इसका नाम कुनवार है। इसमें लोग बैठते हैं। ए बहोत इं अच्छी बस है।

यहाँ के डॉक्टर डॉक्टर जीके सिंह है ।

फलों का जूस सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है।

यह बोहुत ही लाभदायक मशीन है। इससे छतों की ढलाई बोहुत जल्दी ही हो जाती है।

यहाँ पर शादियों का फंक्शन होता है।

ये लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते है कि दो लोग बैडमिंटन खेल रहे हैं ।

इसके शरीर पे बहुत ज़्यादा मांत्रा में बड़े-बड़े कांटे पाए जाते हैं।

इसको मोटिफाई करने के लिए लग रहा है यहाँ पर रखा गया है।

बफर सिस्टम में खाना खिलाया जा रहा है।

ए.सी बनाना सिखाया जाता है।

यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बाल काटा जाता है।